बहुत सारी मिठाई रखे हुए है जो की एक काउंटर के अंदर है इस ट्रे में साड़ियां के सब रखे है नीचे मे कुछ नमकीन भी रखा हुआ है।

और यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे है जो हरे - हरे कलर में है और बहुत सारी लाइट लगाए हुए है घेरे हुए है।